यह एक तेल पंप है इस तेल पंपे के अंदर कुछ व्यक्ति नजर आ रहे हैं।

और इनके बीच में एक घंटा भी रखा हुआ है।

इस गांव के बीच कुछ पानी पड़ा हुआ है।

यह एक दुकान है इस दुकान के अंदर बहुत अच्छा लकड़ी का बना हुआ काउंटर रखा हुआ है।

इस काउंटर के ऊपर एक डब्बा भी रखा हुआ है साइड कुर्सी भी रखी हुई है।

उन कुर्सियों के बीच एक बहुत सुंदर मेज भी रखी हुई है।

उन डब्बों के अंदर बहुत सारा सामान भी रखा हुआ है।

साइड एक लोहे का चैनर भी लगा हुआ है और कुछ पर्दे भी लगे हुए हैं।

इस एल_सी_डी के अंदर यह व्यक्ति कुछ देख रहा है।

इस दुकान के बराबर साइड में एक स्टील की रेलिंग भी लगी हुई है।

पिंजरे के अंदर कुछ लकड़ी बांध रखी है।

कोई पीले कलर का कोई हरे कलर का कोई लाल कलर का ऐसे ऐसे बहुत सारे पंछी बैठे हुए हैं।

इस तेल पम्पे पर बहुत सारे गाड़ी खड़ी हुई है जिनके ऊपर कुछ लोग और कुछ औरतें बैठी हुई है।

इस रूम के अंदर बहुत अच्छा अति सुंदर एक सोफा लगा हुआ है।

रोड के बीच में बहुत सारी लाइटें भी लगी हुई है।

इन पहाड़ों में बहुत अच्छे अच्छे पेड़ भी खड़े हुए हैं।

शोरूम के अंदर बहोत सारी फ्रिज रखे हुए हैं।

जिसका हाथ हमें नजर आ रहा है उसके हाथ में एक छोटा सा बहुत अच्छा फूल भी है।

और कुछ लोगों के हाथ में फूल नजर आ रहे हैं इस रोड पर बहोत सारी ऑटो खड़ी हुई है।

इस भगोड़े के बराबर साइड में बहुत सारे डब्बे रखे हुए हैं जिनके अंदर बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

यह एक ट्रे है इस ट्रे के अंदर बहुत बड़ा एक अकबार बिछा रखा है।

इस स्टेज के अगली साइड बहोत सारे गमले भी रखे हुए हैं।

और कुछ कुर्सियां भी पड़ी हुई है उन कुर्सियों के ऊपर कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं।

व्यक्तियों के अगली साइड एक बहुत अच्छी खाने की स्टेज लगी हुई है जिसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे पकवान रखे हुए हैं और कुछ प्लेट भी रखी हुई है।

जिसके अंदर बहोत सारी दवाइयां रखी हुई है।

इस दुकान के अंदर एक बाल्टी भी रखी हुई है।

जिस मैट के ऊपर कुछ औरतें एक्सरसाइज कर रही है।

इस दुकान के अंदर बहुत अच्छा लकड़ी का फ्रेम बना हुआ है।

जिसके ऊपर एक और लोग और एक बच्चा बैठा हुआ है बराबर साइड में एक टेंपू खड़ा हुआ है

इस कॉलेज के बाहरली साइड बहुत अच्छी एक बाउंड्री भी कर रखी है।

यह एक ऑफिस है इस ऑफिस के बाहर एक स्कूटी खड़ी हुई है जिसके ऊपर एक फाइल रखी हुई है।